यहा पर देखिये आपको ये ब्लैक का ब्लू कलर में माल गाड़ी दिख रही है देखिए उपर से निकला हुआ है वायर मैं टच हो रहा है।

ऊपर देखिए आपको छत पे कुछ डिज़ाइन बनी हुई दिखाई दे रही है वाइट कलर की सोफे और यहा पे टेबल भी बहुत अच्छी तरह से लगाई गई है।

अजो थोड़ासा ब्राउड़ कलर का दिखाई पड़ रहा है यहा पे बहुत सारे बिजली के तार जाते हुए दिखाई पड़ रहे है अंदर कुछ गमले भी दिखाई दे है।